देख सकते हैं यहाँ पर बोहोत सारे गिलास --

लोहे से बनाई हुई यह एक कारखाना है।

यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है।

जो तीन मणियों में विभाजित हैं। पीछे एक बरामदा बनाया गया है।

बड़ा स्कूल है अलर कुछ जगह भी है। सड़क पक्की है इस --

तीन लोग अ बजा रहे हैं संगीत कर रहे हैं गा रहे हैं।

और लोहे की तार यहाँ पर निकाली हुई हैं। जिसमें कर्रेंट आता --

यह एक हाउस है आगे की तरफ ये है ब्रमांडा बन बना हुआ है जिसमें खम्भे लगे हुए हैं।

खिडक़ियां लगी हुई हैं। ऊपर खंबे लगे हुए हैं।